इसने येलो कलर की शर्ट और ग्रीन वाली ब्लू कलर की पैंट डाली हुई है।

और इसमें काफी सारी अलमारियां बनी हुई हैं आलमारियों के अंदर काफी सारा सामान पड़ा हुआ हैं जिसमें पेन पेंसिल्स स्टेप --

यह एक स्कूल का कंपटीशन चल रहा है जिसमें एक टीचर --

और बेंच पे काफी सारा सामान पड़ा हुआ है जिसमें एक पीले रंग की कैंची--

कुछ झाड़ियां भी दिख रही हैं और--

यह एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवार के ऊपर--

यह एक साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है जो कि बहुत लंबी और चौड़ी है और इस इन की दीवारों पर काफी सारी साइकिल --

जोकि एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं और पास में एक ब्लू कलर का और रेड कलर का टाट बिछा हुआ है जिसके ऊपर खड़--

और उसने हरे रंग की टी-शर्ट डाली हुई और जिनकी पेंट है।

जिसके साथ एक हरे पर्दे वाला स्टैंड पड़ा हुआ है जोकि--

खेत की पिक्चर दिखाई दे रही हैं।

यह एक बहोत अच्छी और सुंदर म्यूजिक --